एक आदमी मोबाइल पर बात कर रहा है ।

और प्लास्टिक का कैरेट दिखाई दे रहा है और लोहे का ब्रेंच दिखाई दे रहा है लोहे का पाइप दिखाई दे रहा है ।

लहसन का बोरे दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है दो डस्टबीन दिखाई दे रहा है नीले और हरे कलर का।

यहाँ पर एक चर्च दिखाई दे रहा है एक महिला स्पीच देते हुए दिखाई दे रही है।

पेंटिंग बने हुए दिखई दे रहे है बहुत सारा लाइट दिखई दे रहा है इशू मसीह दिखई दे रहे है |

दिखाई दे रही है एक लोहे का पाइप दिखाई दे रहा है स्टील के ग्री अ ग्रिल दिखाई दे रही है।

फूल दिखई दे रहा है | बड़े-बड़े पेड़ दिखई दे रहे हैं | और बहुत सारी घासे दिखई दे रही है |

यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसमे बहुत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है लोहे की --

और बहुत सारे लोग घूमते-फिरते नजर आ रहे है ।

और यहाँ पर लोहे की रैलिंगे भी दिखाई दे रही है ।

गया बेकरी लिखा हुआ है टीन सेड दिखाई दे रहा हैं लोहे की पाइप दिखाई दे रही है एक शटर दिखाई दे रहा है।